खबे हुए है उनके ऊपर कलर ही कलर लगा हुआ नीचे मैदान डला हुआ पीछे मकान बना हुआ जिसके प्लास्टर नहीं हुआ हैं।

वहाँ पे कुछ टेबलें रखी हुई है नीचे पक्का फर्श है जिसमें टाइल्स लगे हुए है पीछे दीवाल में अलग प्रिंट हैं।

इसमें एक खिड़की बनी हुई है वो सामने एक निसैनी टिकी हुई है जो में काफी बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहै हैं एक बाईक खड़ी हुई है।

सामने काफी सारा ग्राउंड दिखाई दे रहा है पीछे बाउंड्री दिखाई दे रही है वहाँ पे एक लेडिस जैसी दिखा रही है वहाँ पे कुछ छोटे-छोटे पेड़ लगे है क्यारी बनी है ऊपर बादल दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर ट्रेन का पोंता दिखाई दे रहा है ट्रेन के पोंते के उस तरफ मकान बड़ा बना हुआ है।

नीचे पक्का फर्श की तरह दिखाई दे रहा है पीछे बोहोत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है ऊपर लाइट की डोरी दिखाई दे रही है ऊपर बादल दिखाई दे रहे है मंदिर के अंदर--

लाइट की तरह दिखाई दे रही है बाजू में लोहै की लैरिंग जैसी दिखाई दे र --

आगे काफी सारी मोटरसाइकिलें खड़ी हुई है वहाँ पे अंकल कुछ अंकल जी खड़े हुए है पीछे बोहोत बड़े- बड़े --

पक्का फर्श डला हुआ है जिसमें पत्थर लगे हुए हैं बाजू में और मकान की तरह दिखाई दे रहे हैं ऊपर लाइट दिखाई दे रही है बालकनी में--

इधर ऊपर छत की टलहा डला हुआ है और काफी सारे चुरि हैं और कुछ बैनर लगे हुए हैं कुछ उधर--

वहाँ पे चो चबूतरा जैसा बना हुआ है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं मास्क लगाए हुए हैं काफी सारे बच्चे हैं।